एक आदमी जो है डैम के सामने खड़ा होके अपना फोटो निकाल रहा है और डैम पे जो है हरे रंग के कलर में रंगा हुआ है।

जहाँ पे जो यात्रियाँ है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म की जाने की कोशिश कर रहे हैं।

और ये लगभग अ एक पंक्तियों में लगभग अ आठ से दस गेहूं लगाए होग हुए होंगे।

इससे बनाया हुआ है| यह बहोत सुंदर और एकदम सटीक बनाके अ दिखाया हुआ है| यहाँ पे --

जहाँ पे बच्चे बहोत आनंद से खेल रहे हैं।

और फैक्ट्री का जो ओ कलर है ओ ब्लू कलर और वहाँ फैक्ट्री जो है वर्किंग कन्डिशन में है।

और यहाँ पे अ जो स्टोर का जो नाम है वह वैल्यू प्लस है और यहाँ पे हाईएर टी.सी.एल बजाज --

अ फोटो दिखाई दे रहा है। जिसमे की अ बारिश के वक्त जो चीला लगता है। वो यहाँ पे उसके --

जिम के जो इन्स्ट्रमन्ट हैं वो भी नए दिखाई दे रहें हैं और जिम के वाल के ऊपर मिरर लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक नये स्कूल बस का फ़ोटो दिखाई दे रहा है जो अभी-अभी पर्चेज की हुई है।

और बैठने के लिए कुछ कुर्सीया दिखाई दे रही है और कैबिन के जो ग्लास है उसके ऊपर --

यह जो फोटो है ये नदी घाट का फोटो है जहां पे बहुत सारी नौकाएं है जोकि पर्यटन पर देखने के लिए आते हैं।

ये जो है एक ज़ू का चित्र है जहां पे अ हरन दिख रहे हैं।

डिजाइन किया हुआ है और के लिए वापस ठीक रखी हुई है।

मोर जो है वो बादल और बादलनुमा जो एनवायरनमेंट रहता है उसमे नाचता है।